इस टयूटोरियल में मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे एक सरल पह्प अपलोड स्क्रिप्ट बनाएँ
यह हमारी उपलोड डॉट पह्प फाइल में थोड़ा अधिक अग्रिम होगा
हम हमारा इंडेक्स डॉट पह्प इस्तेमाल करेंगे
उपयोगकर्ता को एक फॉर्म देने के लिए हम मुख्य रूप से एचटीएमएल कोड इस्तेमाल करेंगे जिससे कि वह इस विशिष्ट फाइल को जमा कर सके
फिर अपलोड डॉट पह्प में हम इस फाइल को संसाधित करेंगे फाइल की कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे जैसे कि इसका नाम इसका प्रकार साइज़ अस्थायी संचित नाम और कोई एरर सूचना यदि पाई गयी हो
एरर सूचनाओं का इस्तेमाल यह जानने के लिए कर सकते हैं कि वह पायी गयी हैं या नहीं
फिर हम फाइल को संसाधित करने जा रहे हैं और उसको हमारे वेब सर्वर में एक विशिष्ट डायरेक्ट्री में सेव करेंगे
इस ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में मैं आपको जल्दी से बताऊँगा कि कैसे विशिष्ट फाइल का प्रकार जाँचे जिससे कि आप इसे फाइल टाइप्स से सुरक्षित कर सकें
हम यह भी सीखेंगे कि फाइल की फाइल साइज़ को कैसे जाँचें जिससे कि आप के पास अधिकतम और न्यूनतम फाइल साइज़ हो
अतः यहाँ मैंने अपलोडेड नामक एक फोल्डर बनाया है जिसमे मैंने मेरी इंडेक्स और अपलोड डॉट पह्प फाइल्स बनायीं है
और यहीं मेरी फाइल्स संचित हो रही हैं जब वे एक बार अपलोड हो जाती हैं
जब फाइल्स अपलोड की जाती हैं तो शुरुआत में वे वेब सर्वर पर एक अस्थायी जगह पर चली जाती हैं नाकि इस फोल्डर में
एचटीएमएल के लिए हमें एक फॉर्म बनाने की आवश्यकता है
यह करने के लिए हमारे पास एक फॉर्म एक्शन है और हमारे पास एक विशिष्ट एक्शन है जोकि अपलोड डॉट पह्प है और हमने हमारी फाइल यहाँ बना ली है
मेथोड को पोस्ट के रूप में सेट किया है
इसका कारण यह है कि हमें इसे गेट वेरिएबल में संचय करने की आश्यकता नहीं है
क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से हम नहीं चाहते कि वेबसाइट पर भेजे जाने वाले बाइनरी दाता को उपयोगकर्ता देखे
और साथ ही यहाँ हमारे गेट वेरिएबल पर सौ अक्षरों की सीमा है
अतः आपके पास एक काफी छोटी फाइल होगी यदि आपके पास डेटा के केवल सौ बिट्स हैं
ठीक है हमारे पास एक और पैरामीटर है जिसे आपने इससे पहले नहीं सुना होगा
यह एंकटाइप है एन्कोडिंग टाइप जिसका मतलब है कि हम कैसे इसे इनकोड करने जा रहे हैं
यह multi पार्ट होगा और हमें एक फॉरवर्ड स्लैश की आवश्यकता है और फिर यह फॉर्म दाता होगा
संक्षिप्त में हम इस प्रारूप को डेटा के रूप में जमा कर रहे हैं यानि बाइनरी दाता शून्य और एक जिसे मैं यहाँ पहले ही बता चुका हूँ
ठीक है हमें टाइप मिल गया है जिसमें यह एनकोड होने जा रहा है
हम अपना फॉर्म यहाँ समाप्त करेंगे
हमें अपनी फाइल के लिए इनपुट के रूप में कुछ एलीमेंट्स की आवश्यकता होगी
इस टाइप को फाइल के रूप में सेट किया गया है और हम इसे विशिष्ट रूप से माइफाइल बोलेंगे
ठीक है पैराग्राफ यहाँ खत्म होता है और फिर हमें बस सबमिट बटन की आवश्यकता है
ठीक है तो चलिए इसे अभी देखते हैं
इसे बंद कर देते हैं
फाइल अपलोड पर क्लिक करिये
ओह चलिए वापस चलते हैं
इनपुट मैंने यहाँ 2 यूएस टाइप कर दिए हैं
वापस चलते हैं
आप यहाँ देख सकते हैं हमें हमारा इनपुट मिल गया है
मैंने इसे ब्राउस कर सकता हूँ
हम देख सकते हैं हमारे पास फाइल्स हैं जिसे हम उपलोड कर सकते हैं
ठीक है अतः इसे उपयोग के लिए और आसान बनाते हैं
फाइल अपलोड करें
इसे रिफ्रेश करते हैं
हमें यहाँ एक अच्छा पेज मिला है
हमें हमारा हेडर मिला और एक फाइल को यहाँ अपलोड करने की सम्भावना मिली
साथ ही आवश्यकता पड़ने पर खुद से भी टाइप कर सकते हैं
और साथ ही हमारे पास अपलोड बटन है जोकि हमारी अपलोड डॉट पह्प जमा करता है
तो अपलोड डॉट पह्प के अंदर हमें इस फाइल के संसाधन के लिए एक तरीका चाहिए जोकि हमारे फॉर्म से जमा हुई है
इसको करने का तरीका है कि डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स का इस्तेमाल करें
वास्तव में यह सही नहीं है
हम इसका केवल एक उदहारण एको करके बता सकते हैं कि यह सही नहीं है
जब हम करते हैं और मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ हम देख सकते हैं हमें केवल अराय मिली है
ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक अरै है
चूँकि यह मल्टिडाइमेंशनल अरै है कोष्ठकों के पहले सेट में हम फाइल का नाम लिखेंगे जोकि हमने अपलोड की है और इनपुट बॉक्स का नाम जोकि यहाँ से आया है जोकि माइफाइल है
अतः हम यहाँ माइफाइल इस्तेमाल करेंगे
और दुसरे में कई अन्य चीज़े लिख सकते हैं और सबसे सहज और सरल कहिये तो फाइल का नाम है
अतः अपलोड फॉर्म में वापस चलते हैं और इंट्रो डॉट अवि को चुनते हैं
यह यहाँ दर्शाया जाएगा
अपलोड पर क्लिक करते हैं और अगले पेज पर हम इंट्रो डॉट अवि देखते हैं
याद रहे यह हमारा अपलोड डॉट पह्प फॉर्म है माफ़ कीजिये फाइल
ठीक है तो यह इस प्रकार से था
मैं अभी इसे एक वेरिएबल में संचित करता हूँ
अगला हम देखेंगे कि मैं उसे अभी यहाँ लिखूँगा फाइल का प्रकार है
अतः यह डॉलर अंडरस्कोर फाईल्स है और हम रेफेरेंस मायनेम इस्तेमाल करेंगे
और इसके अंदर हमारे पास टाइप होगा
अतः यह प्रकार है या बल्कि हम इसे एको करेंगे जिससे कि आप इसे देख सकें
और यह रिफ्रेश किया
इसको रिसेंड करें और अब इसको देखिये माइफाइल
इसे रिसेंड करें और और हम यहाँ वीडियो स्लैश अवि देख सकते हैं
आप ने शायद यह कहीं पहले एचटीएमएल में भी देखा होगा
उदाहरणस्वरुप यह इमेज स्लैश पंग या इमेज स्लैश जेपीईजी इमेज स्लैश बीएमपी वीडियो स्लैश अवि और वीडियो स्लैश म्पेग या कोई और अन्य प्रारूप हो सकता है
इस समय हम यहाँ से देख सकते हैं कि यह एक अवि फाइल है अतः इसलिए हमें टाइप में यह मिला
अतः हम कह सकते हैं कि टाइप इन सब के बराबर है
अगला मैं आपको साइज बताता हूँ
अतः समय बचाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इस कोड को कॉपी करूँगा यहाँ पेस्ट करूँगा और इस टाइप को साइज में बदलूँगा और इसको एको करूँगा
आप देख सकते हैं कि आपकी जमा की हुई फाइल की e प्रॉपर्टी प्राप्त करना काफी सरल है
मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा और रिसेंड पर क्लिक करता हूँ और हम फाइल का साइज़ प्राप्त कर सकते हैं
अब चलिए कहते हैं हम इसे लगभग पूर्णांक दस लाख बना देते हैं दस लाख बाइट्स वास्तव में एक माफ़ कीजिये दस लाख बिट्स एक मेगाबाईट होता है
माइफाइल वास्तव में एक मेगाबाईट है
अतः यहाँ दस लाख मेगाबाइट डेटा है
अतः चलिए इसे साइज़ नामक वेरिएबल में सेव करते हैं
सही है फिर अगला काफी ज़रूरी है जो है टेम्पोरेरी नामे
यह थोड़ा अलग लिखा जाता है जैसे टेम्प को संक्षिप्त करके टीएमपी और फिर अंडरस्कोर और नामे
यह हमें डाईरेक्टारी देगा जिसमें यह अस्थायी रूप से तब तक संचित होता है जब तक हम इसे अपनी पसंद के फोल्डर में स्थानान्तरित नहीं करते
अतः इस पेज को रिफ्रेश करें
रिसेंड पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि यह एक क्सैम्प में जमा हो गया है क्योंकि मैं इस एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ
किन्तु यदि आप अपाचे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पह्प खुद से संचय कर सकते हैं
आपके पास यहाँ अपाचे होगा इसके आगे आपकी अस्थायी फाइल का नाम होगा
आप देख सकते हैं यह नाम निरुद्देश्यता से उत्पन्न हुआ है जिसके पास टीएमपी एक्स्टेंशन है किन्तु अभी यह हमारे लिए निरर्थक है
अतः हम इसे टेम्प फाइल या टेम्प के रूप में संचित कर सकते हैं
इसे संक्षिप्त रखने के लिए इसे टेम्प लिखते हैं
और अंतिम एरर है
अब मूलतः यदि सबकुछ सही है तो यह शून्य एको करेगा
फिर से कॉपी पेस्ट और इसको एरर में बदलिए
हमें अभी शून्य मिलना चाहिए क्योंकि सबकुछ सही से लिखा गया है
और यह कभी भी ऋणात्मकनिगेटिव वेल्यू नहीं होगी
यदि यह शून्य से अधिक है इसका मतलब यह एक एरर कोड दे रहा है जिसका मूल रूप से मतलब है कि आपके पास एक एरर है
और चलिए कहते हैं हम इसको एरर नामक वेरिएबल में संचित करेंगे
ठीक है अभी के लिए इतना ही
इस ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे अपनी फाइल को अस्थायी संचयन जगह से आपके पसंद की एक विशिष्ट जगह पर लाकर उपलोड करें
और हम क्या करेंगे कि हम इस एरर वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे यह देखने के लिए कि यदि यहाँ कोई एरर्स हैं
यदि यहाँ पर एरर्स हैं तब हम इसे एको करेंगे और एरर कोड इस्तेमाल करेंगे
यदि नहीं हम इस टेम्प को लेंगे और मूव अपलोडेड फाइल नामक एक विशिष्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और हम उसे लेंगे और उसे यहाँ वेब सर्वर पर निर्मित अपनी अपलोडेड डायरेक्ट्री में संचय करेंगे
और इसके बाद मैं आपको कुछ विशेषताएँ बताऊँगा क्या यह जपेग है
हाँ तब जेपीईजी चित्र को अपलोड होने से अस्वीकार करें या विशिष्ट फाइल साइज़ को अस्वीकार करें
ठीक है तो भाग 2 में मिलते हैं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
देखने के लिए धन्यवाद